ओर कुछ टेबलें लगी हुई है जिनपर आदमी बैठते है और ऊपर हमें सूरज दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक - ब्लैक कलर का बादल है ये नज़ारा देखने में बहुत ही खराब हैं।

ओर आसमान भी दिख रहा है कुछ नीला दिख रहा है पीला सफेद सा बगल में एक बिल्डिंग है जिस पर लाल कलर है बहुत ही खिड़कियाँ है बहुत ही सुंदर नज़ारा--